यहाँ पे राइडर भी होता है जिसपर हम दौड़ सकते हैं।

इस पिक्चर में हम देखते है की यह एरिया सुनशान है जो की --

इस पिक्चर में हमें सबसे उपरी फ्लोर पर एक फैन दिखाई देता है।

के उपरी फ्लोर में सबसे अधिक मात्रा में --

की व्हाइट कलर की है और थोड़े-थोड़े ऊपर के कोनो पर यह --